यह नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है जो यहाँ पे बहुत सारे मतलब अथी है टूटा-फूटा जगह है और यहां पे ग्राउंड है घूमने का देखने मे काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा।

ओहो ये तो लगता है एकदम मस्त लग रहा है और बालकनी में बल्ब भी लगा हुआ है और गोल्डन कलर से मकान रंगा हुआ है।

काफी देखने में बढ़िया लग रहे हैं और ये सूर्य की रोशनी भी है और ये गार्डन तो देखने--

ग्रास कलर का झंडा भी है।

और व्हाइट कलर का लाइट लगा हुआ है पीला कलर का दिखने में --

यह एक शौचालय बना हुआ है जो शौचालय के बाहर में बहुत सारा चित्र बना हुआ है।